और आसपास खेत है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है और आजू-बाजू काफी ठोस का मकान है।

ये एक रॉयल इनफील्ड का मुझे शॉप दिख रहा है।

उसके बाद भी शायद शेम्पू है नीचे तेल है फिर तेल साबुन फिर नीचे भी साबुन है कई चार पाँच कार्टून दिख रहा है ।